रेस्टोरेंट में बहुत सारी लाइट्स दिख रही है।

इस वीडियो में मुझे एक गार्डन दिख रहा है।

घर में बाहर की ओर स्टेयर्स दिख रही है।

चर्च के बाहर एक कपरा दिख रहा है।

इसमें मुझे टिकट काउंटर दिख रहा है।

इसमें मुझे बहोत सी साइकल भी दिख रही है।